और ये जिम मे है। जिम का जो रंग है वो गुलाबी और काला है। यहां पर मशीने रखी हुई हैं और लड़के के पीछे शीशा है।

सामने एक लड़का है जो बैग टांगे हुए है जो रोड पर है।

इसके दीवार का रंग जो है वो नारंगी और हरा है और छत पर टीन शेड पड़ा हुआ --

जिसके पीछे एक ओवन रखा हुआ है जिसक् पे शीशा लगा हुआ है। पीछे फैन लगा हुआ है औ पीछे फ्रिज भी है जिसमें फूल बना हुआ है जो बैंगनी रंग का --

और ये गुब्बरे से सजाया गया है। गुब्बारे पीले लाल सफेद नीले नारंगी रंग के हैं और यहां बैगनी रंग की लाइट जल रही --

जिसका पर्दा सफेद रंग का है।

सामने एक तवा रखा है जो बड़ा है जिसमें कई सारे आलू की टिक्की रखे हुए हैं।